अअ चिड़िया ऊपर में बैठा है पिंजरा के।

और डिब्बा में भी है और बहोत सारे अच्छा अच्छा सामान यहा पे उपलब्ध है।

आज जिसमें पैसा पैसा चढ़ा रहा है आदमी और यहां पे बहोत सारे--

एक यहां पे बहुत सारे झरना है पानी का।